इस फोटो में हम लोग एक होटल का दृश्य देख सकते हैं।

देखें तो एक बड़ा सा पेड़ हम लोग को देखने को मिल रहा है।

ओ घर तीन तल्ला का घर है आसमान हमको खुला दिखाई दे रहा है।

आप लोग डाइनिंग टेबल में देखे तो एक रेड कलर का जग एक गिलास और एक नमक रखने वाला डिब्बा भी देख सकते हैं।

इस फोटो में पानी का एक पोखरा देख सकते हैं।

उसके ऊपर कुछ पीला कलर का लगाया हुआ है।

इसमें बहोत सारे बच्चे हैं बैठे हुए हैं।

घेरा हुआ है और आगे की तरफ मुंह उसका दरवाजा देख सकते--